यहाँ पे मुझे एक पानी का बोहोत बड़ा टंकी नज़र आरा है जो वाइट कलर का है बहुत सारे पेड़ नज़र आरे है बहुत सारे पोधे नज़र आरे है।

दिखाई दे रही है गणेश जी दिखाई दे रहे हैं बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं मंच दिखाई दे रहा है पूजा का सामान दिखाई दे रहा है लाल कपड़ा दी--

दिखाई दे रहा है बच्चे दिखाई दे रही है फोटो दिखाई देरा है लाइट दिखाई दे रहा है माला दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे मुझे एक घर दिखाई दे रहा है घर बहुत बड़ा नज़र आ रहा है घर के ऊपर छत दिखाई दे रहा है जिसको ब्लैक कलर के बाउंड्री से घेरा गया है।

और ट्रैक्टर नज़र आ रहा है जो ब्लू कलर का है उसके भी बहुत बड़े बड़े टायर नज़र आ रहे हैं कुछ लोग नज़र आ रहे हैं पेड़ नज़र आ रहा है और रास्ता नज़र आ रहा है।

लाइटे नज़र आ रही है आसमान नज़र आ रहा है लम्बी सी सड़क नज़र आ रही है।

बहत सारे ग्राउंड नजर आ रहे है ग्राउंड में थोड़ा घास दिखाई दे रहा है दूर दूर तक सड़क नजर आ रहा--

यहाँ पर मुझे एक ऑफिस दिखाई दे रहा है जो बोहोत बड़ा ऑफिस नज़र आ रहा है वाइट कलर की दिवार नज़र आ रही है।

यहां पे मुझे एक क्लिनिक नजर आ रहा है जिसमें बहुत सारे मशीनें रखी हुई हैं बहुत सारा लाइटें नजर आ रहा है एक पोस्टर नजर आ रहा है एक खुटा नजर आ रहा--

यहाँ पे मुझे एक फ्रूट का स्टाल नज़र आ रहा है जिसमें बहुत सारे कार्टून लगे हुए हैं डब्बे में फ्रूट का फोटो बना हुआ है सब शील नज़र आ रहा--

इसी में मुझे एक लम्बी सड़क नज़र आ रही है सड़क के किनारे ब्लू कलर का ट्रैक्टर नज़र आ रहा है जिसमें बहुत बड़े बड़े टायर लगे हुए हैं घर नज़र आ रहा है।

बाइक नजर आ रहा है घर नजर आ रहा है बहोत ही बड़ी लम्बी खंबे नजर आ रहे पेड़ नजर आ रहा है पड़ी हुई पट्टीयां नजर आ रहा हैं खिड़कियां नजर आ रहीं हैं।

यहाँ भी मुझे एक दुकान दिखाई दे रहा है जो बहुत बड़ा है जो दुकान दिखाई दे रहा है देशी नाम से है जिसमें लाइटें जल रही हैं।

सामने में बड़ा सा शीशा का दरवाजा नजर आ रहा है बहुत सारे के अंदर फोटो बने हुए हैं बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं टेबल नजर आ रहे हैं चेयर नजर आ रहे हैं।

यहाँ पे मुझे एक हॉल नज़र आ रहा है हॉल में बहुत सारा लाइटें जल रही हैं बहुत सारा पोल नज़र आ रहा है लाइटें बहुत रंग बिरंगी जल रही हैं।

लाइटें ब्लैक कलर की है कुछ लाइट वाइट कलर की है एक बहुत बड़ा सीढ़ी नजर आ रहा है जिसमें रंग बिरंगी लाइट चल रही है छत नजर आ रहा --

के उपर मुझे परदे नज़र आ रहे है फूल नज़र आ रहे है चिलम नज़र आ रहा --

नाव में लोग बेठे हुए नज़र आ रहे है नज़र आ रही है एक बुरा आदमी नज़र आ रहा है जो वाइट कलर का कुर्ता--

ब्लू कलर का टोपी पहना हुआ है बहुत सारे पेड़ नज़र आ रहा है बहुत सारे पंक्षियाँ बहुत सारे पंक्षियाँ नज़र आया रही है बहुत सारे हरे भरे पेड़ नज़र आ रहे हैं बैलून नज़र आ रहा है लाईट --

पूरा नज़र आरा है बोहोत सारे लोग नज़र आरे है बोहोत सारे औरत नजर आरे है बोहोत सारी लाइटे नज़र आरी है झूमर नज़र आ रहे हैं--

यहां पे मुझे एक मंदिल नजर आ रहा मंदिल में बहोत बड़ा पूजे नजर आ रहा भगवान की नजर आ रहे हैं मंदिल के सामने दो बोरा नजर आ रहा है।

नज़र आ रहा है जो ऑरेंज रेड ब्लू कलर का नज़र आ रहा केले के पत्ते नज़र आ रहे हैं बहुत सारे झंडे नज़र आ रहे हैं।

समुन्दर के पीछे बोहोत बड़ा बड़ा पहाड़ नज़र आ रहा है जिसमे छोटे छोटे उगे हुए है समुन्दर के साइड --

साड़ी पहनी हुई है माथे में टोकरी ली हुई है एक सड़क नजर आ रहा झाड़ियां नजर आ रही है पत्ते नजर आ रहे हैं।

बहुत सारे पिलर नज़र आ रहे हैं वो एक कार नज़र आ रहा है चर्च के पीछे और एक नज़र आ रहा है जो उसमें भी बहुत सारे दरवाजे नज़र आ रहे हैं नज़र आ रहा।

रंग-बिरंगे कपड़े पहने हुए नजर आ रहा। कुछ बच्चे खेल रहे हैं। कुछ बच्चे खड़े हैं। बैग नजर आ रहा है। पानी का बोतल नजर आ रहा है। जूता नजर आ रहा--

पूल दिखाई दे रहा है पूल में बोहोत सारा लोग नज़र आ रहा है लाइटे जल रही है आसमान दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे मुझे एक बस के अन्दर का लोकेशन दिखाई दे रहा है बस बहुत बड़ा नज़र आ रहा है बस में बहुत सारी सीटें नज़र आ रही हैं जो ब्लू कलर की है।

यहाँ पे मुझे एक सामने में ग्राउंड नज़र आ रहा है ग्राउंड में बहुत सारे कचरा नज़र आ रहा है जंगल नज़र आ रहा है छोटे छोटे पौधे नज़र आ रहा है बड़े बड़े झाड़ियाँ नज़र आ रहा है।

जिसमें पंखे लगे हुए हैं झंडा लगा हुआ है सामने में गाड़ी नजर आ रहा है जो वाइट ब्लैक कलर का है सामने में और घर नजर आ रहा है एक लंबी सड़क नजर आ रही है।

ढाबा नाम से है ढाबा में बहुत सारे खाने के फोटो नजर आ रहे हैं नीचे दुकान नजर आ रहा है जिसमें कुरकुरे चिप्स के पैकेट लटके हुएं हैं।

यहाँ पे मुझे एक मंच दिखाई दे रहा मंच के ऊपर बहुत सारे लोग बच्चे बैठे हुए हैं कुछ और लड़कियाँ खड़ी हैं एक लड़की ऑरेंज कलर की साड़ी पहने हुई है।